और एक बाइक लगा हुआ है जो अच्छा लग रहा है और वातावरण भी अच्छा --

ऊपर भगवान का फोटो लगा हुआ है तथा फूल है यहाँ का ताड़ी अच्छा --